नीचे कुछ डेक जैसा बेंच जैसा बनाया हुआ है जिस पर कुछ बैगें रखी गई हैं तथा कुछ कॉपी किताबे रखी गई हैं। ऊपर बड़ी-बड़ी लाइट लगाइ गई हैं जो जल रही है। ऊपर सफ़ेद कलर का दीवाल देखा जा सकता है।